ऊपर के छत पंखा भी लगा हुआ है पंखा सफेद रंग का है।

रूम में ढेर सारी सजावट की है सजावट लाल पीले और नीले और हरे रंग के फूल से की गई है।

आसपास ढेर सारी इमारते हैं इमारतें के दीवार का रंग पीला और हरे रंग का है।

यह छवि एक खुले क्षेत्र का है छवि में छोटी-छोटी इमारतें हैं इमारतें के दीवार का रंग पीले रंग का है।

कमरे के दीवार पर तरह तरह के चित्र बने हुए है कमरे की दीवार पर ए_सी लगा हुआ है ए_सी सफेद रंग का है।